यह एक चित्र है इस चित्र में बहुत सी तस्वीरें दिखाई दे रही है और बहुत सी लोग भी दिख रहे है।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक बड़ा सा रूम नजर आ रहा है यहां पे बहुत सी कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक चित्र है चित्र में हवन होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सी तस्वीरें भी दिख रही है।

यह एक चित्र है चित्र में एक कॉलेज नजर आ रहा है।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक--

यह एक चित्र है इस चित्र में एक बड़ा सा होल नजर आ रहा है।

और आगे भी कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं.

बचा हुआ है और इसमें बहुत से लोग भी बैठे हुए दिख रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में कुछ बस खड़ी हुई नजर आ रही है जिसमें कुछ लोग चढ़ते हुए दिख रहे हैं।

येह एक चित्र है इस चित्र में एक शंकर--

यह एक चित्र है चित्र में बहोत बड़ा घर नजर आ रहा है और उसमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं और एक गेट भी नजर आ रहा है।

यह एक चित्र है इस चित्र में कुछ लोग बैठे हुए काम करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर कैमरे भी कुछ दिख रहे हैं।

चित्र में बहुत से लोग नजर आ रहे हैं।

और कॉफी पीते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक दरगाह नजर आ रही है और उसके साइड में बहुत से लोग भी नजर आ रहे--

यह एक चित्र है इस चित्र मे एक दुकान नजर आ रही है।